ये पुधार ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन है यहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं।

पर्पल वाइन कलर टाइप एक शर्ट पहन रखी है वह औरत को चाबी दे रहा है।

यह एक शादी का मैरिज गार्डन है उस दीवार पे गोल्डन कलर हो रखा है सोफा --

यह एक गार्डन हैं जहां पे बहुत सारी मूर्तियां हैं भगवानों कि जैसे हनुमान जी कृष्ण जी राम जी राधा जी नारायण जी ब्रह्मा जी।

यह एक फूड ट्रैक शॉप है यहां पे बहोत सारी किराना शॉप है।

आन्टी अंकल बाइक और बहुत कुछ है यह सड़क यहाँ पे एक --

जिम कर रहा है और यहां पे बहोत सारे उठाने के भी है यहां भी शीशा है येलो कलर --

ये एक फंक्शन हॉल है यहां पे पर्पल कलर का परदा है।

औरत सब बैठ है और पास में एक ब्राउन कलर का गेट भी--

अभी बिल्डिंग का काम चल ही रहा है सीमेंट की पुताई हो रही है यहां पे लकड़ीयां लगाई जा रही है।

और पुजारी जी भी है यहां पे बहोत सारी माला पहनाई जा रही है सारे लोग यहां पे आ के दर्शन करते हैं।

ये राधा कृष्ण की मूर्ति है यहां पे बहुत भव्य मंदिर है यहां की आरती बहुत भव्य की जाती है।

भी है और उ राधा कृष्ण का सिंगार भी बहुत अच्छे से किया हुआ है यहां पर लाइटिंग में बहुत अच्छे से हो रही है।

पे पेट्रोल भरा जाता है लोग यहां पे आते है और गाड़ी में पेट्रोल भरवा के जाते है जिससे गाड़ी अच्छे से चलपाती है।

आदि प्लांट्स है यहां पे से अपन पार्क भी कह सकते हैं यहां पे पेड़ हरियाली बहुत अच्छे से हो रखी है।

यह एक बगीचा है यहां पे एक अंकल और एक आंटी आए हैं यहां पे अलग अलग कलर के प्लांट्स है।